और यहाँ पे सारे ब्रांड न्यू बाइक्स है शोरूम जो है वो बजाज की है पल्सर है काफी सारी इसमें बाइक्स लगे हुए है।

एक रोड है जिसमे एक लेडी आती हुई दिखाई दे रही है ।

यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ की पांडव संगीत महल के नाम से एक शॉप है जिसमें रिघम के होम के सारी फर्नीचर्स मिल रहे है।

मेडल्स भी लगे हुए दिवार पे है और फ्रंट में एक सोफा लगा हुआ है और सोफा के ऊपर एक फ्लावर पॉट लगी हुई है सोफा के ऊपर रेड कलर व्हाइट कलर की कवर भी --

और उसके पीछे भी काफी सारी गाड़ियाँ है और एक रोड पे एक आदमी खड़ा है जिसने की ब्लैक कलर की जीन्स व्हाइट शूज और --

इसके एरिया है काफी सुन्दर काफी बड़ी होटल है और यहाँ पर काफी सारे रूम्स है अवेलेबल है काफी लाइट्स जल रही है और ये रात हो रहे है।

लगी हुई है । बहुत सारी गाड़ियाँ है और काफी लोग यहाँ पे अन्दर जाते हुए दिखाई दे रहे है और ये काफी बड़ी काफी पुरानी बिल्डिंग्स है जो कि येलो कलर की है ।

और ये कार्नर में इसके काफी सारी चीज़े लगी हुई काफी सारी एक्स है और सॉसेस वगैरा रखे हुए हैं और यहाँ पे सारी चीज़े --

इन्हें दो प्लेट बिरयानी में चार एक्स्ट्रा प्लेट दिए हुए है चार लोग आए हुए है इस --

के सामने में एक अलबेस्टर की घर बनी हुई है और यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है जिसने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई है और वो यहाँ पे बैठा हुआ है।

और कुछ लोग नहा रहे हैं कुछ लोग बाइक धोते हुए धो रहे हैं बाइक बाइक को क्लीन करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

वो ये वो जो ये जो आयरन है वो ये स्काई कलर के वायर में है। और वायर ये बोट को बेड पे रख के ही आयरन कर रहा है।

और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ की यह एक जिम है और जिम में काफी सारे लोग बॉडी बना रहे हैं। काफी सारे बॉयज हैं जो कि बॉडी बनाते हुए दिखाई दे रहें हैं।

यहाँ पे देख पा रही हूँ की ये एक स्टेज बनी हुई है। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे फंक्शन हो रही है। डांस की परफॉरमेंस चल रही है काफी सारी चेयर्स लगे हुए हैं काफी लोग हैं ।

मैं यहाँ पे देख पा रही हूं ये काफी बड़ी सी बिल्डिंग है जिसका नाम वैशाली रेसीडेंसी है।